इस तस्वीर में मुझे हेयर ड्रायर भी दिखाई दे रहा है।

टेबल का कलर रेड और व्हाइट है।

इस तस्वीर मे मुझे गाड़ी भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे कई सारे पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं।

जींस अलग अलग कलरो में है।

इस तस्वीर में मुझे एक पहाड़ भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक साइन बोर्ड भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक छोटा सा घर भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे बुद्ध की मूर्ति भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे कई सारे पेड़ पौधे भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे आदमी भी नजर आ रहा --

इस तस्वीर में मुझे कई सारे घर भी नजर आ रहे हैं।

ऑटो का कलर ब्लैक येलो और ग्रीन है।

इस तस्वीर में मुझे एक बस भी दिखाइ दे रहा हैं बस का कलर येलो है।

बोर्ड पे लिखा हुआ है इंडियन स्पाइस फैमिली रेस्टोरेंट ।

बोर्ड पे लिखा हुआ है चांगपाई रिवर आईलैंड ।

इस तस्वीर में मुझे बहुत सारे पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं।

तीनों मैनिक्विन में अलग अलग डिज़ाइन के कुर्ते भी रखे हुए हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक बाइक भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे पंडाल भी दिखाई दे रहा है।

यह तस्वीर किसी ग्रॉसरी शॉप की या होलसेल की दुकान की है।

इस तस्वीर में मुझे दो आदमी भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे बर्फ भी दिखाई दे रहा है।